कुछ भूरे हुए पेड़ है हरे रंग की पत्तियाँ है भूरे रंग के पत्ते है निचे सर पे ग्राउंड (ground) लाइन बार से जा रहे है .

बड़ा सा प्लेट रखा गया है। जो पिले नी सफ़ेद रंग की है। पत्री रखी गई है। हरे रंग की है। कटोरी रखी गई है। जो काले रंग की कटोरे चटनी रखी गई है।

जो भूरे रंग का है पिछे से पी पी पीले रंग का फूल है शटर रखी गई है।